इलेक्ट्रोनिक सामान है। यहाँ पर बहुत सारे आदमी सामान खरीदने आते हैं। यहाँ पर फोर जी के मोबाइल भी मिल --

यह कारखाना काफ़ी बड़ा है। इस कारखाना में लोहे की छोटी-छोटी नट --

यह मैदान है यह मैदान काफ़ी हरा है। इस मैदान के किनारे पर एक कालिया नाग है। यह नाग के बहुत सारे फन हैं। इस पर कृष्ण जी विराजमान हैं। यहाँ पर बहुत सारे मूर्त हैं।